भगवान शंकर के गले में साँप लिपटा हुआ है।

हमे सुन्दर-सुन्दर मूर्तियां नज़र आ रही है जिन मे एक गाय की है साथ ही एक सरदार--